नीचे दो मैट लगे मैट टाइप से कुछ लगे है।

और हाथ में शूज पहना और रखा हुआ है।

व्हाइट कलर का शर्ट ब्लू कलर का जींस और ये एरिया किसी वॉटर रिजोर्स का सोर्स का पानी नीचे की ओर आ रहा है।

और ये किसी कॉलेज का बिल्डिंग लग रहा है।

और इधर भी बहुत सारे बास्केट हैं बीच में जिसमें सब्जियां रखी हैं।

मै एक वाटर फॉल वाले एरिया को देख रही हूं जिसमें नीचे मटमैला पानी है।

जहां अंधेरा सा है का कलर चारकोल जैसा लग रहा है।

और इधर भी दो लोग हैं जिम कर रहे हैं।

और ये जो बाउंड्री बना है जिसके अंदर में डी मार्ट है--

पार्किंग एरिया भी बहुत सारे कारें खड़ी हुई है।

मैं पोर्च को देख री हूं एक इमेज में--

शॉप के बाहर में बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं।

और बहोत सारे सूखे सूखे पेड़ नजर आ रहे है।

एक इमेज को देख रही हूं जिसमें ब्लू कलर की टी शर्ट पहना एक बंदा पीछे आगे में वाइट कलर के कपड़े पहने --